एक चित्र दिख रहा है चित्र में घर दिख रहा है चित्र में शॉप दिख रही है।

मुझे घर दिख रहा है घर में एक दुकान दिख रही है दुकान के अंदर--

मुझे एक चित्र दिख रहा है चित्र में एक पार्क दिख रहा है पार्क में एक टंकिस गोल आकार का बना हुआ है।

चित्र में एक शादी का स्टेज बना हुआ दिख रहा है चित्र में एक बहोत सारी कुर्सियां दिख रही हैं।

जो हॉस्पिटल जैसे लग रहे हैं चित्र में पर्दे दिख रहे हैं चित्र में एक टाइल्स फर्श दिख रहा है।

पोरशन दिख रहा है चित्र में कई सारे टेबल लखी हुई है चित्र में दो आदमी बैठे हुए हैं चित्र में बलून्स दिख रहे हैं चित्र में दो पंखे लगे हुए हैं।

चित में गिलास रखी हुई है चित में टिशू पेपर रखे हुए हैं चित में मूर्ति बनी हुई है।

जो चित्र गार्डन का हैं जिसमें से जानवर के पी स्टेचू बने हुए है।

जो बिल्डिंग है उस कैफे में बना हुआ है वे एक रेस्टून टाइप का कैफे टाइप पर जैसा--

चित में बैटरी रखी हुई है चित में पावर सप्लाई होती है चित में आदमी बैठे को चलाने की कोशिश कर रहा है चित में बैटरी को हाथ लगा रहा है।

जिनमें कई सारे शर्ट पैंट कोर्ट पैंट बने हुए हैं जिनमें काफी गोल्ड रखा हुआ है जिनमें ब्लैक कलर का बना हुआ है एंड --

चित्र एक समुद्र का है चित्र में फुटबॉल बना हुआ है चित्र में नाव चल रही है।

के बाहर जो आदमी टहल रहे हैं लेकिन आदमी नदी के अंदर नहीं टहल रहे हैं चित्र में एक स्कूटी भी दिख रही है।

चित्र में एक स्कूटी है दिखा हुआ है जिसमें कुछ स्कूटर भी बना हुआ है।

जो घर मे काम चल रहा है चित्र मे एक बिल्डिंग है उसमें हरे भरे घास लगे हुए है।

जितमे पुराने जमाने टी_वी रखी हुई है जितमे बहोत सारे बॉक्सेस रखी हुई है।

मुझे एक चित्र दिख रहा है चित्र एक दुकान की है चित्र के अंदर दुकान में शायद टाइल्स बिकती है चित्र में बहोत सारी टाइल्स रखी हुई है चित्र कलरफुल टाइल्स है।

चित्र में एक मंदिर दिख रही है सब लंबी-लंबी मंदिर है एक छोटी दिख रही है इसमें गोल-गोल दिख रहे हैं।

उस चित्र में कई सारी खिड़कियां दिख रही हैं उस चित्र में जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग का कलर लाल है।